सामने बहुत सारी मोटर सायकल और सायकल पार्किंग मे लगी हुई है एक आदमी खड़ा हुआ है।

सामने एक ऍक्सिस बैंक का ए_टी_एम लगा हुआ है उसमे कुछ काच के गेट लगे हुए परचा चिपका हुआ है।

सामने एक दुकान के न्हाई लड़के के बाल काट रहा--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

कुछ पेड़ लगे हुए और कुछ उधर भी पेड़ लगा हुआ गार्डेन मे गाड़ी--

एक आदमी वाहा पर से समान वगैरे खरीद रहा है और कुछ हात मे पन्नी सी लिए हुए बगल मे भी एक फोनपे का--

सामने एक दुकान वाला है जो चोकाने की शर्ट पहने हुए है और उसपर एक सफ़ेद कलर का डिजाइन है।

कुछ पहने हुए एक आदमी खड़ा है और नीचे कुछ सामान रखा हुआ पीछे एक टोकरी मे भी सामान पीछे भी कुछ हात जोड़ रही--